और जैसे लग रहा है यहाँ पे कोई ढलाई का काम चल रहा है। सभी फोटो को क्लिक कियें हुए हैं जो बेहद ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहें हैं फोटो की।